लोग खरीद खरीद के लाते ये भी कोई ऐसी मार्केट लग रही है मुझे अब क्या पता वही की हो हमने वहाँ की तो नहीं होगी ये बट लग री है।

ये कौन है? लेकिन यार ये टीचर तो नही लग रही मुझे। कोई नर्स सी ऐसा लग रहा है। शायद ये कोई अनाथालय भी हो सकता है। अब ये भी नहीं कह सकती मैं। हाँ लेकिन बच्चे ने ड्रेस भी नहीं पहनी तो अनाथालय तो हो सकता है।